यह एक मेडिकल विश्वविध्यालय का चित्र है जिसके बाहर बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे है।

इल एक इमारत का चित्र है इसके आस पास घर दिखाई दे रहे है और सामने दुकानों की शटर दिखाई दे रहे है।

ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चित्र है इसमे जीने दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे यूको बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

खंबा दिखाई दे रहा है वहा हरे वृक्ष दिखाई दे रहे है।

जहाँ बस दिखाई दे रही है बड़े -बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति के हाथ मे बैग दिखाई दे रहा है।